दुकान के बाहर एक साइकल भी दिख रहा है।

इस मैदान को बाउंड्री किया गया है।

इस मकान के आगे दो बाइक भी खड़े किए गए हैं।

एक कार का रंग पीला और एक का सफेद और कुछ कपड़ों से ढके गए हैं।

आसमान भी पूरा सफेद दिखाई दे रहा है।

यहां बहुत सारा सामान भी रखा गया है।

ऊपर साफ आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस बगल के किनारे एक नाली जैसा भी दिख रहा है।

यहां पर एक गाड़ी दिखाई दे रहा है।

यहां पर नीले और सफेद रंग लगाए गए हैं।